खिड़कियों की भी डिजाइन बनी है सामने फ्लोर पर अत्यंत सुंदर टाइल्स लगे हुए हैं।

नीला नीला पानी के आसपास हरे भरे पेड़-पौधे इसकी सुंदरता को दुगनी कर रहे हैं।

जलेबी बहुत रसीली होती है और बहुत सारे लोग इससे खाने के शौकीन होते हैं।

ये दरवाजे गैलरी में बने हुए हैं बारामदे में बने हुए हैं।

कुल मिलाकर ये देखने में अत्यंत मनोहर लग रहा है।

इधर पे हमें एक कॉरिडोर दिखाई दे रहा है और जिसके एक तरफ पीलर से दिख रहे हैं।

और उसके आस-पास बड़े से वृक्ष लगे हुए हैं इस झोपरी के दरवाज़े पे एक पर्दा सा भी डला है।

यहाँ पर हमें एक दूकान दिखाई दे रही है यह यह दूकान हमारी दैनिक उपयोग की इसके सामग्री की दूकान है।

फल रखे हैं जैसे आम अनार नाशपाती संतरे --

यहाँ पर देखिए एक सब्जी की दुकान हम देख सकते हैं एक व्यक्ति बैठा है उसके सामने सब्जियाँ कई रखी हुई है।

देखिये यहाँ पर कितने सारे लोग जमा हैं ओर यह गोल-वल-गोला बना कर यहाँ पर कुछ खड़े हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं।

आप यहाँ पर देखेंगे कि एक बोर्ड हमको दिखाई दे रहा है जिसमें मदर डेरी लिखा हुआ है।

ये एक कार सर्विस सेंटर का --

अंदर के अंदर का चित्र है यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है और पाइप के भी पड़ा हुआ है।

चित्र में हमें एक सैलून दिखाई दे रहा है इस सलून का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

बंद दिखाई दे रही है यह बाजार की का हिस्सा हो सकता है।

इस पहाड़ पर दूर-दूर तक काफ़ी झाड़ियाँ लगी हुई हैं ये दो पहाड़ दिखरें जिसके बिच से बारिश के सीजन में न --.

यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक --

दिखाई दे रहा है इस पहाड़ पर कुछ हरियाली सी भी और दिख रही है।

इसचित में सूर्य उदय हो रहा है।

ये बाहर से निकलते हुए सूरज को देखकर --

और बना हुआ मकान दिख रहा है।

जिस पे निर्माण कार्य अभी चल रहा है।

रहती है यहाँ पर हमें एक यहाँ बहुत अच्छी जगह दिखाई दे रही --

कोई खेल का आयोजन भी किया जा रहा है।

मुस्लिम व्यक्तिओ को देख सकते है सभी ने टोपी पहनी हुई है।

दो वक्ती खड़े हैं जो आपस में शायद बात कर रहें हैं।

ये खुल हुआ सब मैदान बहुत अच्छा लग रहा है।

गुलाबी पर्पल और सफ़ेद रंग से फूलो के --

ये बहुत बड़ा है और काफी लम्बे हिस्से मे फैला हुआ है।

चित्र में हमें एक दुकान सी दिखाई दे रही है जहाँ पर कुछ सब्जियाँ रखी है जैसे कद्दू लौकी बटे --

पत्ता गोभी वहीं पर ऊपर काफ़ी सारे आम रखे हुए हैं यह पके आम हैं।